जहां पे झूले दिख रहे हैं।

अपने ट्रैन आने का इंतजार करते हुए --

बड़ी-बड़ी घड़ी भी है।

एक भाईसाहब अपनी बॉडी दिखा रहा है।

ऊपर सब चेयर पकड़ के खड़े हुए हैं तीन-तीन चेयर देख रही हैं सीढ़िए भी दिख रहीं हैं।

एक ये येलो कलर की शर्ट पेहेने हुए लड़का है।

बोहोत सारे बच्चे है पढाई कर रहे हैं भी लगी हुई है।

और अब भी वो फेस मास्क लगा कर बैठे हुए हैं।

सेलून का नाम डेनिम सेलून कुछ दिख रहा है मुझे।

मैंने बोहोत ही खूबसूरत से --

गमले लगे हुए है जिसमे कुछ पेड़ भी लगे हुए --

ये ग्रीन -ग्रीन सा कुछ पेंट है।

लाइट्स भी लगी हुई है दिख रही है | नीचे टोकरी रखी है दिख रही है जरा --

एक बच्चा बैठा हुआ है वो --

कुछ रखा हुआ भी है टिशू वैगेरा सब यहाँ पर दिख रहा --

इस जगह पे कोई फ़ंक्शन है। इस पे सोफा रखा हुआ है। उस पे दो जन बैठ के अपनी--

कुछ लोग पैदल भी हैं कुछ रिक्शे से भी जा रहे हैं |

ओरिजिनल केक । ये लोग कुछ अंदर से केक लेते हुए निकल रहे हैं।

बॉडी सोढ़ी बनाने यहाँ आते है।

बोहोत सारे आदमी --

क्यूकि एक खिड़की दिख रही है जोकि --

बोहोत ही खूबसूरत सा पंडाल सजा हुआ --